सामाने एक मकान बंद पड़ा हुआ है। ऊपर तीन जंगले दिख रहे हैं।

ओओर अँगे पीछे चल रहे है उसके पीछे कुछ नजर आ--

सामने एक बडा सा उम्न-उम् नज़र आ रहा है और लेफ्ट साइड मे भ गाड़ी -गाड़ी नजर आ रही हे